और कुछ फुल के पौधे भी हैं।

यह फोटो बहुत ही खूबसूरत है।

इसमें एक बुकिंग काउंटर भी दिख रहा है।

यह एक मस्जिद का तस्वीर है।

मस्जिद में लोग नमाज पढने जाते हैं।

अलग-अलग प्रकाशन की किताबे भी दिख रही हैं ।

यह एक ई-रिक्शा का फोटो है।

यह वैशाली जिला में पड़ता है।

यह बहुत ही स्टैंडर्ड सैलून लग रहा है।

और उसके बगल में दूसरा एक चेयर लगा है।